फल के गिने जाते हैं यह अमरुद बहुत सारे उपवासों में खा खाये जाते --

यह मंदिर में पूजरी भी होंगे यह ग्राउंड के किनारे बहुत सारे दुकानें भी हैं यह दुकानें में खाने के सामने रखे जाते --

यहाँ पर ट्रेन भी चल रही है। इस ट्रेन में अनके से डब्बे है। यह ड़बो में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए है। कुछ पैसेंजर उतर रहे है। इस जगह पर--